इस पिक्चर में देख सकते है।

यहां पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि--

यहां पर बहोत सारा ईंटा सजा कर रखा गया--

सकते हैं कि यहां पर एक दुकान दिख रहा है।